जैसे कि मैं यहां देख सकती हूं कि यहां एक बहुत बड़ी नदी है नदी के किनारे पे बहुत सारे घर है टावर है।

और वहां प्राध्यापक उन्हें खड़े होकर देख रहे हैं।

और यहां बैठने की भी व्यवस्था की गई है।

यह एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है।

स्विमिंग पूल में छोटे बच्चे बैठने के लिए --

और ये पानी बहुत साफ है।

जैसे कि मैं यहां देख सकती हूं कि --

जैसे कि मैं यहां देख सकती हूं कि यहां कई सारी बैट है।

आठ बैट है और उसके साथ --

रेलवे स्टेशन पे लोग जा आ रहे हैं

यहां एक सिंगल बेड पे एक इंसान पलटी होकर लेटा हुआ है।

और यहां एक आइसक्रीम का दुकान है और कहीं सारे दुकान हैं।

यहां एक बहुत बड़ा समुंद्र है और समुंदर पे कई सारे नाव --

जैसे कि मैं यहां देख सकती हूं कि यहां एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है महाविद्यालय के बाहर बहुत साफ सफाई है।

रेल्वें पटरी है जाति आती है।

घूँघट लेके पानी हाथ में लेके प्रणाम कर रही है।

कार्यालय के दरवाजे के ऊपर फूल की माले लगाई हुई है।

मूर्ति है और यह मूर्ति --

ऊपर है उसके पीछे ही एक बहोत बड़ा घड़ी है।

जैसे कि मैं यहाँ देख सकती हूँ कि --